और साथ ही में यहां पर छोटे मोटे पेड़ पौधे भी रखे दिखाई दे रहे हैं हरी बुरी घासों से यह--

और एक दो अलग अलग टीम के बच्चे फुटबॉल खेलते हुए न--

यह तस्वीर आपको डेंटल क्लिनिक की दर्शायी गई है यहां पर सड़क के किनारे में नुक्कड़ पर--